इस पिक्चर में हमें एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही है तथा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो फोर वीलर को--

सुधर रहा है फोर वीलर के आगे के पार्ट खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

इ इस पिक्चर में एक क्लिनिक दिखाई दे रही है जिसका नाम हेल्थी विंग्स दिखाई दे रहा है।

भाईट और ब्लू कलर के बलून से डेकोरेट किया हुआ है।

बीच में से रास्ता दिखाई दे रहा है त ब ही एक --

बैंक के बाजु में एक ए_टी_एम मसीन है जो जिसके गेट बंद है तथा उसके बाजु से सीढियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

तथा साइड में डी_जे भी रखे दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में हमें एक इस्कूल का मेन_गेट दिखाई दे रहा है इस्कूल के मेन_गेट के आगे।

अपना खाने का स्टॉल लगाए हुए दिखाई दे रहें हैं तथा कुछ टीचर्स इनके स्टॉल में दिखाई दे रहें हैं एक स्टॉल पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा के नाम से।

एक बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है तथा स्टेशनरी के बाजू से एक और शॉप दिखाई दे रही हैं जिसका शटर बंद है।

स्विमिंग पूल के बाहर एक बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें तीन सूअर दिखाई दे रहे हैं।

एक बाउंड्री उठी हुई भी दिखाई दे रही है।